इस तस्वीर में हमें बहुत सारे व्यक्ति खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ व्यक्ति खाना परोस रहे हैं।

फोटो के बगल में एक विंडो है।

विंडो के बगल में एक छोटी सी घड़ी है।

व्यक्ति के गले में हमें एक लॉकेट दिखाई दे रहा है।

बैंक के अंदर हमें लाल रंग का मशीन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ा जैसा पूल दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में एक बैनर लगा हुआ है।

एक्सिस बैंक के बगल में और एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है स्टेट ए_टी_एम

इस गैराज में और भी गाड़ियां है।

मनुष्य के आगे हमें एक हरा रंग का जनरेटर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें बहोत छोटे छोटे फूल के पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बेड के बगल में हमें एक कुर्सी दिखाई दे रहा है।

उसीमें हमें एक बैग रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें मंदिर दिखाई दे रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है इस रेस्टोरेंट में हमें बहुत सारे डाइनिंग टेबल और चेयर्स दिखाई दे रहे हैं।

पेट्रोल पंप के बगल में हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें फ्रिज के अंदर बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें लकड़ी से बने हुए बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

दर्पण में हमें बहुत सारे बॉडीबिल्डर के स्टीकर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मोटे वाले भैंस के कान में कुछ लगा हुआ है।

भैंस एक टिने के घर के नीचे है।

इस टीने के घर में दो खिड़कियां भी हैं।

चॉक के बगल में फेविकोल रखा है।

बैनर में लिखा है आरक काफी स्टॉल ।

इस छठ घाट में हमें बहुत सारे मनुष्य दिखाई दे रहे हैं।

छठ घाट को बहुत अच्छे तरह से सजाया गया है लाइट वगैरा से।

जो तबला बजा रहा है उसके बगल में जो व्यक्ति है वो माइक में बोल रहा है।

बिल्डिंग के बगल में एक ट्रक है।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

पेट्रोल पंप में एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है क्वालिटी फ्यूल ।

ये एक रूम की तस्वीर है।

पानी के अगल बगल में बहोत बड़े बड़े चट्टानें हैं।